यह एक शॉवर है शॉवर से पानी बरस रहा है और वहाँ पे लाईटिंग लगी हुई है नीचे घास भी है पीछे एक पेड़ लगा हुआ है आसमान दिख रहा है।

एक येलो कलर का दिख रहा है बहुत सारी लाइटिंग लगी हुईं है स्लीपरस रखी हुई है और नीचे टाइल्स लगे हुए है।

यह एक स्विमिंग पूल है जिसमे बहुत तीन बच्चे खड़े हुए है और स्नान कर रहे है।

यह एक जंगल है जंगल मे बहोत सारे पेड़ लगे हुए है नीचे छोटी - छोटी घास लगी हुई है और यहाँ पर हिरण है।

यहाँ पे गेंदों की मालाएं टंगी हुई है एक वाइट कलर की है जिसमें रेड कलर के फूल लगे हुए हैं बीच में और एक गेंदे के है जोकि ऑरेंज कलर की है।

ये एक पार्क है पार्क में रेलिंग लगी हुई है जोकि लोहे की है हरे कलर की है पीछे एक बिल्डिंग दिख रही है जोकि वाइट कलर की है और पार्क में--

कैमरे लगे हुए है लाइटिंग लगी है और निचे टाइल्स लगे हुए दिखाई दे रहे है यहा पर रंग-बिरंगे टी-शर्टें है वाइट कलर मै है ऑरेंज है ब्लू है ब्लैक है।

यह एक रेलवे स्टेशन है जहाँ पर बहुत सारी चेयर रखी हुई है जोकि सीमेंट की बनी हुई है और एक बाइक रखी हुई दिखाई दे रही है।